यहाँ पे खिड़कियां और दरवाजे लकड़ी के बने हुये हैं। इसके बहार बहोत सारे लाइटे हैं और कुछ आदमी भी आपस मे बात कर रहें और कुछ रिक्शा खड़ी --

इसका किनारा सफ़ेद और लाल रंग का है इसके आस-पास बहुत सारे पेड़-पौधे हैं इसके अंदर कुछ आदमी आपस में बात कर --

एक गाय है जो काले रंग की है यहां पे कुछ हरे रंग का चारा पड़ा हुआ है जो गाय खा रही है इसके पास मे भी एक जानवर है।

यहाँ पे कुछ मेज और कुर्सिया पड़ी है यहां या यहां की अलमाड़ियां कांच की बनी हुई है।

यहाँ पे एक आदमी बैठा एक औरत बैठी हुई है। जिसने बैगनी रंग की साड़ी पहन रखी है एक आदमी कुछ लिखा पढ़ी कर रहा है यहाँ एक दुकान सी लग रही है।

यहाँ पे एक पुल सा नज़र आ रहा है जो सरियों से और टिन के ताकतों से बना हुआ है।

यहाँ एक सै सैलून है जो बहुत ही अच्छा है यहाँ सफेद रंग का पंखा है यहाँ पे कुछ अ काले रंग कि कुर्सी है जिनपे कुछ बच्चे और कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

यहाँ पे बहुत सारे अ उम्म कुछ कप उम्म सीसी रखी हुई है यहाँ पे शीशा लगा हुआ --